ये लोग कर रहे हैं यहां पे कार सर्विस किया जाता है।

और बहोत सारी गाड़ियां चल रही हैं। ये एक दरगाह है। यहाँ पे बहोत लोग आते हैं।

दो लोग साइड में खड़े हैं काफी सारे इटे सीमेंट बालू है कुर्सियां हैं

यह लोग हमारी अ हमारे देश के राष्ट्रीय हमारे झंडा झंडा को फहरा रहें हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हैं।